फोटो आएगा ना बोलना है ये अनुश्री मेडिकल स्टोर मैन मार्केट ततापानी ततापानी काह नइ--

शांति है यहाँ पर कार्यालय जो की बंद पड़ा हुआ है काफी दिनों से इसके वजह से--।

यहाँ पर देखिए बलून से कितना खुबसूरत गुलाबी नीला कलर का सजाया हुआ हैं।

जिम पार्लर को काफी मशीन बहुत सारा जिम करने वाला हैं फिर लाइट बत्ती का का भी काफी उत्तम व्यवस्था हैं।